एक मशीन रगी है लगी है जो कि ब्लैक कलर की है और व्हाइट कलर की है उस पर एल_इ_डी स्क्रीन लगी है बगल में भी ऐसी मशीन रखी है वो ऑरेंज कलर की है।

बॉडीबिल्डर का पोस्टर लगा हुआ है दो कुर्सियाँ है जोकि लाल कलर की है उनके हत्थे पकड़ने के ब्लैक कलर के है जमीन पर मेटे बिछी हुई है वो हरे कलर की है।